जो ग्रे कलर के पत्थर से बनी हुई है पीछे काला कलर का पर्दा लगा हुआ है और लाइट लगी हुई --

और दीवार पे गेट बना हुआ है महिला खड़े होकर देख रही है।